और टेंट भी दिखाई दे रहा है और यह सब खड़े हुए हैं और अ यह शॉप जैसी दिखाई दे रही है और यहां पे --

केकड़े जैसे भी है। मछलियां भी है। बोहोत सारे वेजिटेबल अ- नॉन वेजिटेबल लोगन भी हैं।

और इसके आगे एक घर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। लाइटे दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे किसी को स्लीपर पीनी हुई है।

और इसका जो वो है दिखाई दे रहा है कांच का दे कांच का कांच भी दिखाई दे रहा है। टीवी वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई है और भी बहोत सारे सामान हैं जो रखे हुए हैं यहाँ --

यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की शादी-वादी हो ]>क्योंकि डेकोरेशन काफी सारा किया हुआ है और मतलब यहां मुझे ऐसा लग रहा है।

और यहाँं पर नीचे मतलब टाल्स जैसे लगी हुई है और मतलब घर जैसे बने हुए हैं जिसमें काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। ओ और --

जिसके पास में बहुत सारी बाइके दिखाई दे रही हैं और स्कूटी भी दिखाई दे रही है और कोई वहां पे खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है और --

यहा पे एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है मंदिर के पास कारपेट बिछा हुआ है जिसपे दो तीन लोग खड़े हुए है। एक बच्ची भी है। दो लोग भी है।

और एक टेक्टर भी दिखाई दे रहा है औ वहाँ पे बोहोत सारे लोग भी खड़े हुए हैं। मौसम है जो ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है। तार वगैरा दिखाई दे रहे हैं। कारपेंट दिखाई दे रहा है।